लाल कलर बोर्ड लगा हुआ है और आइड-साइड बिल्डिंग्स ए बनी है और इसके सेकंड फ्लोर पे येलो कलर का कलर किया हुआ है।

यह एक ब्रिज बना है ब्रिज में ब्रिज पर राइट साइड काफी सारे हरे पेड़ पौधे हैं और ऊपर एक काली कलर की पट्टी बनी हुई है और वह नीचे उसके काफी सारे पत्थर है।

पर बहुत सारी वायर्स लगे है और पीले कलर का बोर्ड लगा --

किसी ने ब्लू कलर की टी शर्ट पेहनी है ओर वो अपने प्लेग ग्राउन्ड को सुधार ने की कोशिश कर रहे है आइड साइड हरे हरे पेड़-पौधे है और नीचे हरी हरी --

यह एक पेट्रोल पम्प है और पेट्रोल पम्प की अ-ऑरेंज और पीले ब्लू कलर की से बना हुआ हैं।

और यहां रोड बना है राइट साइड कई सारी बिल्डिंग बनी है और नीला आसमान है।

पत्थर की चट्टाने है बहुत सारी वहा से पानी निकल के आ रहा है लोगचट्टानों पे खड़े है नाह रहे हैओर झाड पे नजर आ रहे है ।